यह एक प्लेटफार्म है प्लेटफार्म अभी खाली है लोग ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं।

एह एक पेट्रोल पंप है जहां पर गाड़ियां और स्कूटार पेट्रोल या डीजल भरवा रहि है।

इहा एक पेट्रोल पम्प है जहा पेट्रोल डिजेल मिल--

यहां पर टायरों में हवा भरने की सुविधा भी मौजूद होती है यहां कोलकाता में यह लोगों को बहुत राहत देता है।

यहां पर कस्टमर बैठकर अपनी व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं एक यहां पे टी.वी. भी लगा है जिससे लोग आनंद ले सकें।

एक कस रेस्टोरेंट है जहां पर अलग तरह का व्यंजन मिलते हैं इहा आप चाइनीज नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन खाना खा सकते हो इसका नाम कस्तूरी रेस्टोरेंट है।